बैंबू जैसा पेंट करा जा रहा है।

इस दृश्य में दीवार है दीवार का रंग उजाला है बड़ा सा गोदरेज दिखाई पड़ रहा है।

नीचे एक आदमी है जो एक कुर्सी पर बैठा हुआ दिखाई पड रहा है।

दो तीन पेड़ के पत्ते दिखाई पड़ रहे हैं पेड़ के पत्तों का रंग हरा है।

किसी हार्डवेयर के हार्डवेयर दुकान के बाहर की फोटो हैं जहां पर अंदर में बहुत सारी रेकें है बनाई हुई है इसमें बहुत सारे सामान रखे हुए हैं।

टेबल पर पर्दा लगाया हुआ है।

इस दृश्य में बहुत सारे ईंटे दिखाई पड़ रहे हैं जो टाइल्स के काम आते हैं।

इस दृश्य में कुछ बच्चे हैं जो योगा कर रहे हैं सभी ने व्हाइट कलर की ड्रेस पहनी हुई है।

छोटे छोटे बॉक्सेस दिखाई पड़ रहा है बड़े बॉक्स दिखाई पड़ रहे हैं।

इस दृश्य में दो बाइकें दिखाई पड़ रही हैं एक बाइक पे टी_वी_एस लिखा हुआ है।

बगल में बड़े बड़े बाउंड्री है जिस पे ब्लू कलर की पेंट की गई है और ऊपर व्हाइट और नीचे थोड़ी हल्की ब्लू ।

जिसके सामने बहुत सारी ड्रेसिंग रखी हुई है दो वो गैस रखा हुआ है उसके ऊपर कुछ लगाया हुआ है जिसका रंग काला है।

यह ए_के ही इंटरप्राइजेज के बाहर की फोटो है जहां पर अंदर में कुछ रैके बनाई हुई है।